जिसके ऊपर एक ट्रे रखी है। ट्रे पे कांसे के कप ग्लास रखे हुए दिख रहे हैं। एक शीशा भी लगा है।

ब्लू कलर का वॉटर टैंक रखा है एक बोतल भी रखी हुई दिख रही है।